यार मन त लागे पनीर टिक्का है के कि है यार हॉटलं कि सीन है बट आपने कट्ठ होटल है मुँह म पानी आ रियो है यार आंन्न देख के सही मे --

मन तो अभी खानी है यार मैं तो हरी चटनी दही सब देख के यार सही मे मेरे को देख मन बहुत कर रियो है आँख साइड में कर लो वरना मैं खा जाऊंगा इन्हे।